पीछे एक सड़क भी दिखाई दे रहा है।

नीचे बहोत सारे खेत दिख रहे है।

टेबल पर एक ग्रीन कलर की बॉटल भी दिख रही है।

सामने कुछ गोलाकार पिलारे भी दिखाई दे रही है।

सीलिंग पर कुछ लाइटें लगी हुई है।

सामने की ओर ग्लास पर माय सेकंड होम लिखा हुआ है।

दीवार पर एक काले कलर का स्पीकर भी दिख रहा है।

इनके ऊपर कुछ पत्ते दिख रहे हैं।

अंदर की ओर भगवान की मूर्ति दिख रही है।

यहां पर ब्लू कलर के कर्टेंस भी दिख रहे हैं।

उसके बगल मे एक्सीस बैंक भी लिखा हुआ है।

फील्ड पर गोल आकृति जैसा कुछ बना हुआ है जिन पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

सीलिंग पर तीन पंखे दिख रहे हैं।

यहां पर दो तीन झंडा दिख रहा है।

सामने की ओर बहुत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक मार्केट का है।

यहां पर बहोत सारे गेंदे के फूल दिख रहे हैं जिन्हें ठेलों पर रखा गया है।

यहां पर लोहे की बाउंड्रिया दिख रही है।

सामने दो तीन चेयरे दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बड़ा सा प्लेटफार्म भी दिख रहा है।